सामने हमें फैक्ट्री

पर्दों से सजाया गया है।

वही दायीं ओर देखे तो एक आदमी दिखाई --

और एक मोर की भी --

दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमें हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई --

सूरज भी दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई --

कुछ लोग दिखायी दे रहे हैं।

तालाब भी दिखाई दे रही हैं।

और वहीं पे हमें रेलगाड़ी की पटरियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

दाई ओर देखे तो हमें लाल र --